और वहाँ पर कुछ स्टेज टाइप के बने है छोटे-छोटे से जिन पर दियों में अगरबत्ती लगाई गई है और मोमबत्ती रेड कलर के पंडाल बने --

ब्रिज का फोटो लिया गया है। ब्रिज की जो बाउंड्री है वो लोहे की बनी हुई है उसका कलर है सिल्वर ।

और पर्दे लगे हुए हैं येलो कलर के पिंक कलर के और कुछ लोग खड़े हुए हैं गेट के बाहर --

बिल्डिंग का फोटो लिया गया है और बिल्डिंग जो है वो बहुत ही बड़ी है| स्टेज बनाया गया है कलर जो है बिल्डिंग का वो ग्रीन है।

दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। बहोत सारें कुछ लोग हैं जो बाहर खड़े हुए हैं और उस रूम पर प्लस का साइन बना हुआ है। एक बल्प लगा हुआ है। वाइट कलर का कमरा है।

और रोड पर एक आद म लड़का है जो फोटो क्लिक करवा रहा है जिसने मेहरून कलर की शर्ट पहनी है।